ये इमेज भी भाई बोहोत बढ़िया लग रही है और वाशरूम भी है भाई देखो बच्चों को कुछ पुरस्कार दिया जा रहा है बोहोत ही बढ़िया और सामने की सामने ये फैन भी लगा दिखाई दे रहा है भाई।

देखो सफेद अकेले बनियान पहने हुए बिचारे काले पड़ गए है और मेहनत कर रहे है भाई यह देखो पैरों में जूते भी पहने हुए है उने--

भाई दीवार पर उजाला दिख रहा भाई स्क्रीन बना दिया दीवाल को भाई यह लैपटॉप भी रखा है कुछ आदमी समझा रहा है।